एक मेडिकल है मेडिकल में बहुत सारी दवाइयां दिख रही है अलग अलग बॉक्सों में दवाइयां रखी हुई है।

लाइट लगी हुई है और कुछ डेकोरेट किया हुआ नजर आ रहा है और रुको आगे छोटे छोटे बच्चों की है फोटो वो --

ट्रैक्टर का टायर रखा हुआ है और बड़े-बड़े मशीनें वर्कआउट के लिए --

और एक व्यक्ति बुक्स लिए हुए खड़ा है बुक्स दिखा रहा है उसके पर कुछ --

कुछ लाइट दिखाई दे रही है और मकान के बाहर एक खुली दिखाई दे रही है और मकान के आंगन में एक पंखा रखा हुआ है।

रोड के ऊपर दो लाइने खींची हुई है सफेद सफेद कलर की डबल रो--

बहुत ही रंग बिरंगे चद्दरे बिछाई हुई है बेड पर सब बेड खाली दिखाई दे रहे है और आंगन में टाइल भी लगी --

मूर्ति लगी हुई है और कुछ तस्वीरें ऊपर जाने के लगी हुई है और उसमें कुछ सोफे और कुछ चेयर रखी हुई है और --

बहुत सारा कपड़ा है उसमें उसकी छत पे बहुत डेकोरेट की हुई है नई पंखा लटका हुआ है तो कुछ --

कंप्यूटर लैब सब नजर आ रहा है इसमें बहुत सारे टी_वी_टी_वी नजर आ रही हैं।

इस गाड़ियां खड़ी है कुछ बाइक खड़ी है एक व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है एक टावर दिखाई दे रहा है एक पास में खंबा है।